यहाँ पे दो चकरी रखी हुई है दो यहाँ पे तलवारे रखी हुई है यहाँ पे तीन काली-काली नेम प्लेट भी रखी हुई है।

साथ ही साथ यहाँ पे यहाँ पे इन सबको गेरवे रंग से रंग किया गया है खिड़की की स्लाइडिंग खुली हुई है नीचे की कुछ खुली हुई है कुछ ऊपर की बहुत सारी बंद की हुई है पास ही मे एक रास्ता भी बना हुआ है।

साथ ही साथ यहाँ पे गेट भी बने हुए हैं जैसे नई जैसे बहुत सारी खिड़कियाँ बनी हुई है यहाँ पे एक एक रो में दो खिड़कियाँ --

दो पतले- पतले से पत्थरों से पिलर भी बनाई गए है जहाँ पे बहुत सारे पेड़-पोधे लगे हुए है झाड़ियाँ लगी हुई है और यहाँ पे एक जंगल --

यहाँ पे यहाँ पे आसमान मे बहुत काले बादल घने छाए हुए है बादलों के रंग काले है यहाँ पे दो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग हैं।

इसके नीचे के बाहर चॉकलेट रंग के गेट भी बने हुए हैं साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे फूलो के टब भी लगे हुए हैं और यहाँ पे तीन से चार कूलर्स भी लगाई गई--